दिखाई दे रहा है छोटे छोटे का पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थोड़ी सी घास दे--

यह एक अं क्या बोलते हैं शादी का फंक्शन दिखाई दे रहा है।

जहां पर अ अंधेरा है रात में है लाइटिंग दिख रही है इधर उधर से।

दे रहा है जहां पर सुहागन मोटर लिखा हुआ है और नीचे कुछ सामान पड़ा है प्लायर वैगैरा ये खोलने का।

इधर भी दो रूपए का सिक्का दिखाई दे रहा है।

और पीछे गार्डन में टेंट लगा है सोफे कुर्सी दिखाई दे रही है साउंड सिस्टम है साइड में--

और उसके ऊपर कुछ व्हाइट जैसा कुछ रखा है किचन का कुछ काम चल रहा होगा ऐसा लग रहा है मशीन दिख रही है --

यहां सोफे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पिलोज भी है और मनी प्लांट जैसा कोई सा पॉट दिखाई दे रहा है रखा हुआ।

श्री धारेश्वर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दिख रहा है।

गाड़ी दिख रही है सब्ज़ी भाजी आलू टमाटर प्याज़ दिख रहे --

कपड़े दिखाई दे रहें हैं बहोत सारी लड़कियाँ हैं।

यह एक कैंप जैसा दिख रहा है बहोत दूर--

अं गोडाउन जैसा लग रहा है खिड़की दरवाजों का एक लड़का झांक के देख रहा है पीछे से--

यह एक झरना दिखाई दे रही है पा--

और कुर्सी रखी है एक अंदर एक इधर कुर्सी रखी है आदमी पेपर पढ़ता दि--

तो कुछ नीले कलर का झूमर जैसा लगा है अह सब लोग दिखाई दे रहे हैं लाइट्स वगैरा दिखाई दे--

यह एक अह पॉवर प्लांट जैसा दिख रहा है।

यह एक अह पावर प्लांट है यहां बहुत पेड़ पौधे दिखाई दे रहे।